टी का एरिया लग रहा है यहां पे बहुत सारे बलूनस से गेट बना हुआ है एक टेंट लगा हुआ है एक कलरफुल --

यहाँ पर बहुत वैरायटी की कपड़े नज़र आ रहे हैं।

यह फार्म हाउस की एंट्रन --

ये मेले के किसी बड़े झूले से लिया गया फोटो है।

और दूर कहीं लोग भी दिख रहे हैं ईंटे भी रखी हुई हैं।

और पीछे आसमान दिखाई दे रहा है।

और एक ओर इंसान दिख रहा है जो आधा ही दिख रहा है।

बहुत सारे लोग दिखाई दे रहें हैं।

इसके बाहर हल्की-हल्की घास दिख रही है पौधे दिख रहे हैं जिसमें बहोत बारिक-बारिक --

जो इसे सही कर रहें है टायर निकला हुआ है।

उनके पीछे एक पतला सा पेड़ है।

बहुत सारे वैरायटी के शाम्पूस और लोशन दिख रहे हैं।

एक अंकल इन बैट्स को देख रहें हैं और दुकान में बहुत सारी वैरायटी --